बहोत सारे टेम्पल है।

रेड कलर और वाइट कलर की बिल्डिंग है।

इसके गले में एक हैडफ़ोन हैं।

मांथे पे एक सिंदूर है।

सामने एक लाउडस्पीकर है।

बहुत सारी लाइटिंग है एक लाइट फोकस नज़र आ रहा है।

कुछ पेड़ है हरे कलर के--

फोटो लगा हुआ है कुछ आज भी लोग है।

सामने लोहे की खेलने की इमारते--

तस्वीर में एक आदमी है |

शाम सामने एक डोंगा हैं।

बड़े से डोंगर है।

इस तस्वीर में एक बड़ा-सा तेज़ है।

एक बड़ा सा टावर है।